और उसके शटर बंद है अभी और उसकी बगल वाली दुकान जो है वो खुली है| ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है वहाँ।

एक बड़ा-सा रोड है| एक रोड पर एक गाड़ी चल रही है वो रोड के के पास काफी सारी बोलेरो तीन रखी हुई है दो बोलेरो है।